गेट के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं यहां सामने में एक लाइट का खंभा भी है।

इस चित्र में सामने एक बड़ी सी सड़क है सड़क के उसे पर एक बड़ा सा मंदिर है जिसे पीले तथा लाल रंग से पेंट किया गया है।

पीछे में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।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

बाईं ओर के घर में एक पंखे जैसा बना हुआ है।

यह चित्र किसी दुकान का है।

और सामने में स्कूल के बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसके चारो तरफ सजावटी घासे से बिछी हुई है।

यहां सामने में कुछ व्यक्ति खड़े हैं घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी है।

इस चित्र में है सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है।

पीछे स्लाइड करने वाली चीजें रखी हुई है।